और ये गाय दूध देती होगी कम से कम ज्यादा नहीं तो बीस पच्चीस लीटर --

दुकान नजर आ रही है और यहां पर कई प्रकार की समान दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे दुकान नजर आ रहा है यहां ये जहां पर हमको --

पैसे ट्रांसफर करते हैं और सब बहुत सारी समान दिखाई दे रही है जैसे की--

जनरल स्टोर की तरह दिखाई दे रहा है और यह एक जनरल स्टोर जो हैं।

चाय स्पेशलिस्ट जो की एक बहुत ही अच्छी दुकान है ऐसा प्रतीत हो रहा है और यहां पे चाय की सारी समान उपलब्ध--